सामने हमें एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिसे एक आदमी नीचे बैठकर वॉश कर रहा है और साथ ही में एक सफ़ेद कलर की बाल्टी भी रखी हुई है पास ही में एक दूसरी दूसरा आदमी भी बाल्टी में पानी लिए हुए खड़ा है।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

सामने हमें एक रोड दिखाई दे रहा है। जहाँ पर कई सारी बाइके और स्कूटी खड़ी हुई है और सामने की ओर एक ए.टी.एम. है। जहां पर कुछ लोग अंदर की और खड़े हैं और --